काफी सारी बकरियां दिखाई दे रही हैं। बकरियाँ मुझे सफेद कलर की दिखाई दे रही है । इसमें एक दो बकरी मुझे--

स्कूटी खड़ी है जो सफेद कलर की है आस-पास घर दिखाई दे रहा।

बाँसुरी है। बाँसुरी का कलर गोल्डन दिख रहा है। सर पर मोर पंख लगा हुआ है। पीछे की तरफ दीवार दिख रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक हाटल दिखाई दे रही है। हाटल के अंदर मुझे काफी सारी लाइटस् दिखाई दे रही है। होटल के ऊपर एक खिड़की दिख रही है।

लड़के के हाथ में एक थैली है लड़के ने ब्लैक कलर का बैग टांगा हुआ है पीछे की तरफ बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक शारूम दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ बैनर लगा हुआ है इसमें मुझे के.टी.एम. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है। गेट चॉकलेटी कलर का दिख रहा है अअ आगे मुझे कार दिखाई दे रही है जो कि व्हाइट कलर की है।

इस पिक्चर में मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है। शॉप के ऊपर बैनर लगा हुआ है। बैनर के ऊपर अजय कार सर्विस लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है। इस पर क्यूआर कोड भी पड़ा हुआ है। पास मे मुझे चेयर भी दिख रही है।

ऊपर ब्लू लाइट लगी रही है नीचे की तरफ रेड लाइट लग रही हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक केक दिखाई दे रहा है। केक सफ़ेद कलर का है केक के ऊपर डेकोरेशन किया गया है।

गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है। प्लेट के ऊपर रिफ्फु लिखा हुआ है। नीचे की तरफ टेबल दिख रही है जोकि सफेद कलर की है।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

इसमें मुझे एक स्कूटी दिख रही है जोकि सफेद कलर की है स्कूटी पर एक लड़की बैठी हुई हैं।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

पास में मुझे छोटी छोटी घास और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के दिख रहे हैं।